डोर मेट लगा हुआ है सामने दरवाजा है जिसमें सफ़ेद कलर का कुछ लगा है ऊपर आसमान है जो कि फिरोजी कलर का दिख रहा --

सामाने एक कुर्सी है जोकि कत्थई कलर की दिख रही हैं। आस-पास काफी सारी खिड़कियां लगी हुई। जालियां लगी हुई दिख रही --

सामने काफी सारी खिड़कियाँ दिख रही हैऔर कुछ लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे काफी सारे काम करते हुए दिख रहे हैं।

बाइक मे और सामने हेलमेट लगाया हुआ कुछ लोग रखी हुई है दिख रही है कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे गाछे लगी --